यह तस्वीर एक वाटर पार्क की है तस्वीर में एक बड़ा पानी का तालाब है।

स्टेज के सामने दो व्यक्ति बैठे हैं और उनके आगे एक रेलिंग है।

तस्वीर में मुझे एक मैदान नजर आ रहा है।

ईमारत में पत्थरों की दीवारें हैं खंभे और अ धनु धनुष प्रकार प्रवेश द्वार भी है।

सामने एक बिजली का खंबा भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक सालों के अंदर में दृश्य दि दिखा रहा है इसमें अ कई कुर्सियां है।

दुकान के आगे एक मेज है। जिस पर कई प्लास्टिक के डिब्बों में टॉफी बिस्किट नमकीन और अन्य खाने पीने की चीज़े रखी हुई है।

व्यक्ति ने हल्के रंग की शर्ट पहन रखी है।

सड़क पर कंकर और छोटे पत्थर बिखरे हुए दिखाई दे रही है।

आदमी ने ग्रे कलर की जैकेट पहनी है।

इस तस्वीर में एक किराना का दुकान दिखाया गया है।

जिस पर अलग अलग कंपनियों के सॉफ्ट ड्रिंक्स और पानी का बोतल रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है।

कुछ डेस्क पर पेंसिल बॉक्स और रंगीन पेंसिल रखी हुई भी दिखाई दे रही है।

अंदर की तरफ एक कंप्यूटर दिखाई दे रही है जहां कुछ बोतले और सामान रखें है।

बाई और दाई दीवारों पर किताबों की अलमारियां लगी हुई हैं जिनमें ढेर सारी किताबें और पत्रिकाएं रखी गई हैं।

इस तस्वीर में एक पुल का द दृश्य दिखाई दे रहा है जो नीले आसमान के नीचे फैला हुआ है सड़क के दोनों ओर सफेद रंग की रेलिंग दिखाई दे रही है जो सुरक्षा के लिए बनाई गई है।

बाहीं ओर एक दीवार पर लगा साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पे वेलकम टू इंस्पेक्शन बंगलो में वो लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक पार्क या सार्वजनिक स्थान का दृश्य दिखाई दे रहे जहां बीच में एक सुनहरा बुद्ध प्रतिमा है और उसके चारो ओर हरे भरे मैदान के साथ रंग बिरंगे बड़े लगे हुए है।